यह एक मकान की तस्वीर है यहां एक घर बन रहा है दो बच्चे भी बैठे हुए है मजदूर काम कर रहे है।

यह तस्वीर गाड़ियों की है यहां दो सफेद और दो काली कारें खड़ी हैं।

ये तस्वीर एक मकान की है।

यहां पर दो भैंसे खड़ी है।

ये तस्वीर एक आदमी की है।

फरस पर अखबार लगा हुआ है उसपर ये पेटिया रखी है।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

उसने हरा सूट पेहना हुआ है।

और यहां एक बाइक भी खड़ी हुई हैं।

यहां बहोत सारे पंखे भी चल रहे हैं दीवार पर घड़ी लगी हुई है बलफ़ भी जल रहे हैं।

ये केक दुकान में रखा है दुकान बहुत सुंदर है और ये टेबल पर रखा है।

ये तस्वीर एक कमरे की है।

ये तस्वीर एक ग्राउंड की है।

एक औरत खड़ी है पीली साड़ी पहनकर बहोत लाइट जल रही है।

बहोत सारी टाइलें भीं रखीं हैं।

यह तस्वीर एक बिल्डिंग की है। इसका रंग हरा और काला है।

यहां एक आदमी भी खड़ा है।

ये तस्वीर एक सड़क की है।

ये तस्वीर एक आदमी की है वो नीचे बैठा हुआ है।

ये तस्वीर एक भवन की है।